काफी न्यू सामान है इसमें और सामने कुछ काँच भी दिखाई दे रहे हैं और हमे इसमें पंखे भी दिखाई दे रहे हैं |